अम्म मिस्त्री-वगैरा दो मिस्त्री एक लेबर लगे हुए हैं। इस काम --

देखने में भी काफी सुंदर सा दिख रहा --

और काफी लोग यहाँ घूमने फिरने अत्यधिक तरीका से लोग जाते हुए हैं।

ये खेल का नजारा है।

देखने में भी काफी सुंदर-सा दिख रहा है।

काफी अनुभवी सा क्लास चल रहा है। काफी अच्छा दिख --